एक हरा-भरा मैदान है जिसमें बहुत सारे स्‍टूडेन्‍ट है| कुछ स्‍टूडेन्‍ट गढ्ढा खोद रहे हैं कुछ छाता लिये खड़े हैं | बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं खुला आसमान नजर आ रहा है।

दो बाइकें नजर आ रही है कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है एक डस्‍टबिन नजर आ रहा है कुछ पोस्टर नजर आ रहा है पेड़ नजर आ रहा है खुला आसमान नजर आ रहा --

बड़ा-सा जिम है उसमें कई व्यक्ति नजर आ रहे हैं बैलून नजर आ रहे हैं लाइटे नजर आ रही हैं पोस्टर नजर आ रहा है डम्बल नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक हट नजर आ रहा है। बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं। खुला आसमान नजर आ रहा है। रोड नजर आ रहे है।